यहां पर मुझे कुछ--

और एक आदमी के हाथ में--

और मुझे यहां गणपति जी की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

और यहां पर बैठने के लिए बेंचेज भी लगाए हुए हैं।

इसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

रेड कलर की छत लगी हुई है।

जो स्काई ब्ल्यू कलर की है।

दे रहा है जोकि बहुत अच्छा सजाया गया है जिसमें फूल और पर्दे लगाए हुए हैं।

यहां पर मुझे एक रोड दिख रही है।

और यहां बड़ा सा मुझे घर दिख रहा है।

और यहां पर मुझे एक गाड़ी भी दिख रही है जो सफेद कलर में है।

लोग चेयर पर बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं।

और यहां मुझे एक वाशिंग मशीन भी दिख रही है जो सफेद कलर में है और --

पोस्चर और तस्वीरें लगाई दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक रूम दिख रहा है।

पर ऊपर से इसे लकड़ी का बनाया हुआ है।

यहां पर मुझे कुछ बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे फूलों से बना हुआ--

दिख रहा है जिसमे बहोत सारे फूल लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है जो कुछ सफेद कलर की और कुछ--

अम ब्लैक कलर में मुझे दिखाई दे रही है।

और यहां मुझे कुछ बाइक्स भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।